यहां पर कोई दुकान दिख रही है।

उस पुल पर बहोत सारे लोग चढ़ कर आ जा रहे है।

देवाल पर सौरमंडल का भी चित्र बनाया गया है।

यह एक फूलों की दुकान है जहां पर अनेक प्रकार--

किसी की सादी है यहां पर मैट भी दसाए गए हैं बगल में मेज है उसके ऊपर भी मैट है और --